पहाड़ के बीच में एक गुफा बनी हुई है। गुफाएं अक्सर ठंडी होती हैं।

बस में काफी लोग बेठे हुए है जो अपनी-अपनी यात्रा स्थल तक जायेंगे।